यहां एक लड़की डांस कर रही है जिसने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है।

इस इमेज में यहां पर एक फीस मार्केट दिखाई दे रहा है यहां पर सामने मछली रखी हुई है।

एक पार्क दिखाई दे रहा है यहां पर सामने फाउंटेन नज़र आ रहा है।

और सामने कुछ झाड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर सामने कुछ घर दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक छत भी नजर आ रही है।

जहां पर पुस्तके नज़र आ रही हैं और ऊपर यहां पर लाइट्स भी जलती हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है सामने यहां पर सामुदायिक केंद्र लिखा है।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

एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है।

और तस्वीरे भी दिखाई दे रही है।

जहां पर पतंजलि लिखा नजर आ रहा है और यहां पर शटर बंद दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है।